दो लोग काम कर रहे हैं और आगे एक और इधर है वहाँ पर काम कर रहे हैं व्हाइट कलर की मस्जिद यहाँ पर दिख रही --

यहाँ पर एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है जिसपे ब्लू कलर की लाइट वगैरा लगी हुई है।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

यहाँ पर एक मस्जिद दिख रही है जिधर ब्लू और व्हाइट कलर के उसमे और गोल्डन कलर का डिजाइन दिया लगा है और यहाँ पर --

लाइटिंग वगैरह डली हुई है ग्रीन कलर की लाइटिंग वगैरह यहाँ पर डली हुई है यहाँ पर एक वायर वगैरह भी दिख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट भी शो हो रही है यहाँ पर बाइक्स वगैरह भी खड़ी है गार्डन भी यहाँ दिख --

यहां पर बिलो व्हाइट कलर की एक गाड़ी दिख रही है यहां पर।

यहां पर एक हॉस्पिटल शो हो रहा है जो व्हाइट कलर में दिख रहा है और एक रेड कलर में भी यहां पर दिख रहा है जहां लाइट जल रही है| और यहां पर ब्लैक कलर का गेट दिख रहा है और वहां पर दिये वगैरह--